इसमें एक आदमी माइक के आगे खड़ा है जोकि हाथ में कागच लिए हुए है।

त्रिशूल और एक शेर की बी चित्र है और गणेश जी का बी चित्र है।

इस चित्र में बहोत सारे आदमी खड़े हुए हैं और आस पास बहोत सारी घास भी लगी हुई है।

दो कु आदमी बाहर कुर्सी पर बैठे हैं। फूल और गुब्बारों से इसकी सजावट की हुई हैं।

जिसने लाल रंग की साड़ी पहेनेवे हैं और लाल रंग की चूड़ियाँ भी उसने पहनी हुई है।

ये चित्र शादी का है जिसमें बहोत डेकोरेशन की हुई है और बहोत लाइटे लगी हुई हैं।